में एक व्यक्ति खड़ा है जो की सफेद रंग का टी शर्ट पहना हुआ है।

साइड साइड में पिलर लगा हुआ है जो की लाल और सफेद रंग का है साइड में कुछ घर बना हुआ है।

बाहर एक ब्लू रंग का टेबल है जिसके ऊपर एक पानी का जार रखा हुआ है।

यह दृश्य एक पार्क का है यहां पे फुटपाथ बना हुआ है और साइड साइड में लाइट जल रही है।

इसका बिल्डिंग का रंग सफेद है जिसका बॉर्डर लाल रंग से किया हुआ है।

राइट साइड में मैदान है जिसमें खास उगे हुए हैं।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

यह दृश्य एक ए_टी_म के बाहर का है।

यहां पे बहोत सारा पेड़ उगा हुआ है।

इसके बगल में एक कैमरा है जिसके बगल में एक फूल टंगा हुआ है।

यह दृश्य में एक बच्चा अपना फोटो ले रहा है जो की मैरून रंग का स्वेटर पहना हुआ है और उसने टाई भी लगाया हुआ है।

इसके सीलिंग पर लाइट लगे हुए हैं और कुछ बॉल्स लाइट भी लगी हुई है साइड साइड में टूल भी रखा हुआ है।

यहां कुछ पोस्टर्स लगा हुआ है इसके काउंटर के ऊपर कुछ लाइट लगी हुई है।

से एक व्यक्ति काले रंग का टी शर्ट पहना हुआ है और एक व्यक्ति सफेद रंग का।

यह दृश्य एक डैम का है जहां से पानी गिर रहा है और यहां एक पत्थर भी है।

के पीछे कुछ पहाड़ है जिसमें कुछ जंगली पौधे उगे हुए हैं।

व्यक्ति ने हरे रंग का टी शर्ट पहना हुआ है और काअ काले रंग का हाफ ट्राउजर पहना हुआ है।

दृश्य एक मकान के बाहर का है जिसका रंग गुलाबी और लाल है।

उसका बाउंडेरिंग मैरून रंग से किया हुआ है इसके पीछे एक पेड़ है और एक पोल है।

इसके बगल में कुछ कुछ पोस्टर टंगी है और यहां कुछ व्यक्ति खड़े हैं।

यहां फर्श पर ब्राउन और सफेद रंग मार्बल बिछा हुआ है।